एक पार्लर है जहाँ पे एक लिखा हुआ है एविन फोर कैफे है ए सॉरी एक कैफे है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स लगी हुई है टेबल लगा हुआ है कुर्चला अलग से कैबिन बना हुआ है घड़ी के बहुत सारे पिक्चर्स --

ये एक बहुत अच्छा सा जिम है जहाँ पे बहुत सारे --

इस्त्री किया जाता है बहुत सारे कनेक्टेड है ड्राई क्लीनिंग का --

इलेक्ट्रॉनिक्स से घड़ी लगा हुआ है टाइमर लगा बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं इस्त्री रखा हुआ है ।

ये एक बड़ा सा टाइल्स का दुकान है जहां पे एक बड़ा सा टर्क है जिसमें बहुत से समान लादे जा रहे हैं अ वहां बहुत सारे गद्दे बेड रखे गए हैं ब्लैक कलर के रेड कलर के हैं और लोहे के समान रखे हुए हैं।

जी एक आदमी है जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है कॉरिडोर की में --

और एक डिजिटल घड़ी रखा हुआ है पोश्टर्स लगे हुए लड़की की फोटो है लाइट लगी हुई है पंखा लगा हुआ है।

ये एक शॉप है जहाँ पे बहुत सारी सामाने रखी हुई है रूम है और बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से है लाइटें लगी हुई है और डोर बना हुआ है बहुत सारे बड़े बड़े मशीनस हैं रखी हुई है।

ये एक दुकान है जहाँ पर बहुत सारी वाशिंग मशीन रखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक की सामानें मिलती है म्यूजिक बॉक्स है फ्रिज है।

वाशिंग मसीन एक आदमी है मोबाइल है बहुत सारे बड़े बड़े टी_वी रखा हुआ है बॉक्स है म्यूजिक बॉक्स है।

ये एक बड़ा सा गोदाम है जहां पे बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं दो ट्रक पे बहोत सारे सामान रखा गया है।

बहुत सारे लाइटें लगी हुई है रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई है ।

दो तीन लेडीज बैठी रिसेप्शन पे कोई नही है एक बड़ा सा टी_वी लगा हुआ है ए_सी लगा हुआ है कैमरा लगा बहोत सारे पंखे लगे हुए लाइटे लगी हुईं--

ये एक बड़ा सा सुराही है जिसमें अलग अलग डिजाइनर किए गए हुए है और डिजाइन करके बहोत सारे निकासी किए गए एक गमला नीचे पड़ा हुआ कुर्सी रखा हुआ है बहोत सारे--

ये एक बड़ा सा चर्च है जहाँ पे ईशा मसीह की फोटोस लगी हुई हैं ।

उसमें बहुत सारे डिजाइनर सामान है धागे रखे हुए हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान है गुंडी के बहुत सारे गेट उट रखे हुए हैं और आस में बड़े बड़े रोड रखे हुए हैं ब --

एक पे लाइट लगा हुआ है दो तीननन दो घाट भार में खड़े हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और गमलों में भी पेड़ पौधे लगा --

बाइक खड़ी है स्कूल टाइप में हॉस्पिटल है बाइक खड़ी है बहुत सारी बसेस खड़ी है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।

पेड़ पौधे का भागानी रोड साइड पे है बहुत सारे घा --

और घर के पास भी घास वाले पेड़ पौधे हैं बहुत सारे --

शॉप है जिसका नाम है फास्ट फूड शॉपिंग मॉल है अंदर में बड़ा सा मॉल है रसोई है होटल डिलीशियस हैं बहोत सारी ए_सी लगी हुई हैं बहोत सारे बैरिकेड बना हुआ है बड़े बड़े पेड़ पौधे होटल --

ये एक बड़ा सा रूम है जहाँ पे बहुत सारी सामाने रखी हुई गद्दा रखा हुआ है ।

ये एक बहुत बड़ा सा कंपनी है जहाँ पे स्टील की सामान बना बना के रखी हुई है कट्रेने हैं और मसीन लोहे के बने हुए हैं जिसमें दो पहिये लगे हुए हैं और दो फायर लगा हुआ है और बहुत सारे मसिने बना बना के स्टील्स के लम्बे लम्बे तार रखे इम --

ये एक बड़ा सा रूम है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई है बहुत सारी लाइटें रखी हुई हैं।

और की फोटो पीकॉक की लड़की की फोटो पेंटिंग बनाकर रखा हुआ है और वह छोटे छोटे पेंटिंग बनाया हुआ बुक बहोत सारी रखी हुई हैं।

यहां पे लोहे की बड़ी बड़ी सामान रखें में पीला पीला के बहोत सारे रॉड रखी हुई है लोहे के करनेटर पर बने हुए हैं।

हम बहोत सारी एक ड्राम रखा हुआ है लाइट लगी हुई मीटर बैठा हुआ है अ बहोत सारी पाइप रखी हुई है पंखा लगा हुआ है सीट है उसपे बैठने के लिए रॉकेट टाइप का है ये--